और बहुत सारे फूल स हैं यहाँ --

ग्रास दिख रही है पेड़ दिख रहा है अअ--

चियरें दिखाई दे रही हैं कम न्यूजपेपर दिख रहा है ।

और पेड़ दिखाई दे रहे हैं पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ।

पेड़ हैं और घर भी हैं बिल्डिंग भी है ।

इस कैफे का नाम दि सिटी कैफे है और यहाँ फोटोशूट करने वाले सात लोग हैं ।

स्पीकर दिखाई दे रहे हैं टेबल के ऊपर स्पीकर रखे हैं वो टेबल --

कंपाउंड के अंदर पे ग्रास लगा हुआ है आजुबाजु घर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ होटल के बाजू में अवंती मेडिकल है ।

ऑटो स्टैंड भी है ।